और काफ्री अच्छा भी लग रहे हैं दिखने में और सीट भी है और बल्ब भी लगे हुए हैं और दीवारे भी --

इस फोटो में मुझे दिखाई दे रहे हैं एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और इसमें रखे हुए हैं ट्रेक्टर और ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में।

और बाहर में एक आदमी भी खड़े हैं ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में पीछे में पेड़ भी लगे बहुत बड़ा है।

और चेयर वुयर भी है और तिरंगा भी है और ये काफी बड़ा लग रहा है देखने में बहुत--

इस इमेज में काफी बड़ा एक कमरा दिख रहा है और ये बहुत अ च्छा लग रहा है इसके अंदर तीन आदमी हैं और दो आदमी पेंट कर रहे हैं एक आदमी खड़े हैं।